यह टाटा मोटर्स है यहां पर टाटा मोटर्स का पार्ट्स मिलता है।

डिटोल रखा हुआ हैं और बहुत सारे दवाई भी वहां रखी हुई हैं।

एक में गाजर का हलवा रखा हुआ है चम्मच रखा हुआ है और बहुत सारे समान रखे हुए हैं।

एक वाटरफॉल है जिसका चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हो उगे हुए हैं।

और यह एक आदमी वहां पर देख रहा है झरना की ओर देख रहा है।

एक आदमी ग्राउंड से बाहर जा रहा है।

और एक ओढ़ने वाला कंबल भी वहां पर रखा हुआ--

दो आदमी वहां पर आपस में बात कर रहे हैं।

कॉफी स्टॉल के ओनर ओनर का शर्ट का कलर रेड है।

साइड में दो कांच के डब्बे रखे हुए हैं उसमें बिस्किट भरा हुआ है।

अंदर बहुत सारे साड़ियां भी रखे हुए है।

और इसमें जमीन का रंग इसका ग्रीन है पानी से चलते बहुत सारे कजरी जमा हो गया है।

यहां पर बहुत सारे आदमी हैं।

इस्कूल का बाहार एक बड़ा सा गेट है। गेट का कलर रेड है।

कपड़े से उधर ढके हुए हैं पिला कलर के कपड़े हैं।

और तीन बॉस के खंभे खड़े हुए हैं।